जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है यहां पर--

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक_के नर्सिंग होम है।

जो कि रात में बंद हो चुका है और इसके अगल बगल में दुकानें दिखाई जा रही हैं।

ज्यादा मिट्टी उत्वरक लग रही हैं।

बहोत ही सुंदर सुंदर घड़ी रखी हुई है।

फोर व्हीलर भी रखा हुआ है।